फूल एक ऐसी चीज है जिसको देख कर इंसान का दिल खुश हो जाता है देखिए यहां पर एंड वो --

नारंगी रंग सुर्ख रंग और उस उसके बीचों-बीच खड़ी वो खूबसूरत ईमारत और इर्द-गिर्द का--

बहौत सारे खिलाड़ी अपनी जो है वो मस्‍क कर रहे हैं और इर्द-गिर्द से बहौत सारे लोग गुजर रहे हैं।

ऐसा लगता है जैसे अभी-अभी ओस के छबनम के कतरे इनपे पड़े हो और वो पानी के छोटे-छोटे--

आं हा एक खूबसूरत सा एक हो होटल है जहां पर एक--

वो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक छॉपी शॉपिंग मॉल है जहां पर बहुत सारे लोग अ--

और आम से तरबूज ताकी लोंग आए और अपनी पसंद के जो है ना वो फल यहाँ से खरीदारी करे ।

अगर ये मंजर किसी गांव या ऐसी जगह का हो तो इसकी दिलकसी में और भी इजाफा हो जाता है जहां इर्द-गर्द दरख्‍त हो।

ग्रोसरी करना जरूरत की खुद लेना मर्दों के साथ-साथ बहुत सारी महिलाओं का भी --

एक खूबसूरत सी डिश पेश की गई है जो बोहोत ही कलरफुल और भोत जबरजस्त बोहोत टेस्टी लग रही है।

शॉपिंग करना मैं तो कहती हूं भारत देश के क्‍या दुनिया के हर आं--

और उस आं बहुत सारे आं जो बिजली के टावर और सड़क पर आती-जाती सो गाडि़यां--